यहाँ पर हमें एक घाटी नज़र आ रही है इसके नीचे की तरफ घना जंगल नज़र आ रहें हैं।

यहाँ पर हमें सड़क के एक किनारे पर टायरों की दुकान नज़र आ रही है जोकि बड़े ट्रैक्टर के टायर है और सामने की तरफ हमें --

सभी तको में अलग अलग सामान रखा हुआ है। एक ताक में अलग अलग तरह के अगरबत्ती के पैकेट रखे हुए हैं। एक ताक में मेग्गी रखी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके गेट के गेट के वहां पर फूलों से सजावट की जा रही है।

और बीच में सीडियां हैं। सीड़ियों पर रेड कारपेट बिछा हुआ हमे नज़र आ रहा है। आस पास दो बड़े गुलदस्ते नज़र आ रहे और एक --

जो की एक जाली के अंदर रखी हुई है फ्लोर के उप्पर ओर अन्य खेलने का सामान भी हमें यहां पे नजर आ रहा है अलग अलग कंपनी के जो बैट हैं वो हमें नजर आ रहे हैं।

यहाँ हमें एक सुपर मार्केट का द्रश्य देखने को मिल रहा --

उसके आगे हमें कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। पेड़ के पीछे की तरफ हमें बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है। और आसमान नजर आ रहा है।